जोकि बहोत ही अच्छी दिख रही है।

यहां पर बहोत ही अच्छा समान--

जिनके डम्बल्स रखे हुए हैं जो कि देखने में बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिख रहे हैं साथ--

साथ ही यहां चार जनरेटर रखे हुए जो की देखने में बहोत ही--